इस चित्र में हमें एक कक्षा दिखाई दे रही है।

और इसके पीछे एक घर भी दिखाई दे रहा हैं और पेड़ भी लगे हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक हॉल दिखाई दे रहा है।

खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

जो कि एक झरने के नीचे--

साथ में एक और व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

जिसके अंदर संतरी वे सफेद रंग के गुब्बारे से सजाया हुआ है।

जो की बहोत खूबसूरत तरीके से सजाई हुई--

अन्य डिज़ाइन की टाइल्स दिखाई दे रही है।

वै और भी काफी चीजें दिख रही है।

जिसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक गुरुद्वारा नजर आ रहा है।

और वे हरे व सफेद रंग की तार भी दिखाई दे रही है।

और इसके आस पास पेड़ भी दिख रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक गेड़ा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक कैफे दिखाई दे रहा है।

बैठने के लिए कुर्सियां व मेज लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें दो दुकाने नजर आ रही है।

पीछे कुछ पहाड़ दिख रहे हैं।

जिसके बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आ रही है।

फास्ट फूड शॉप दिख रही है।

जिन पर पिज्जा लिखा हुआ है।

इस चित्र में एक जिम दिखाई दे रही है।

उसके बाहर खिड़कियां बनी हुई दिख रही है।

क्लास रूम दिखाई दे रहा है।